देख के भी लग रहा है बहोत अच्छा साफ-सुथरा है और --

ये कोई न दुकान वुकान का शॉप लग रहा है किराना दुकान का--

सामने में तेल है फेयर लवली कुरकुरे--

मुरकु स्ट्रेफ्री पेड वेड भी है यहाँ--

बस्तर साईड का लग रहा है यह और स्वस्थ केंद्र है --

अच्छा भी लग रहा है यार बेहतरीन दिख रहा है और सब जगहे पे भी और --

अच्छा दिख रहा है बहुत घर भी बेहतरीन --

ये ये तो कोई एकदम बहुत बड़ा-सा यार नदी-वदी का लग रहा है यहाँ तो लोग नहा रहे है वहाँ ब्रीच भी बन रहा है यार--

ये एक दो तीन चार पांच छे--

इधर सात आठ बेच में और गढ़ाने वालेगए नो दस ठो--

आह इ इ इ तो कोई न एकदम बोटे का लग रहा यार जंगल वंगल के अंदर घर वर बनाये हे।

आ रक्षा बंधन आ रहा है करके राखियाँ भी बेच रहे हों ना अलग-अलग प्रकार के पांच रुपए दस रुपए बीस रुपए--

जाना पड़ेगा कभी यहाँ देखने वेखने के लिए क्या है न क्या है ऐसे कर के--

बहुत अच्छा भी लग रही है हॉस्पिटल में ना कभी इलाज विलाज कराने के लिए --

उस टाइम का है और अच्छा भी दिख रहा है पूरा स्वेटर - विवेटर ब्रांडेड टाइप के लग रहै हैं।

क्रिकेट विरकेट और एक दो तीन चार मंजिल का पूरा अपार्टमेंट है यहाँ यार --

एकदम नीट एंड क्लीन दिख रहा पूरा जगह टाइल्स वाइल्स भी बहुत अच्छा लग रहा ऐ.सी वैसी भी लगा है यार--

बहोत बहुत बड़ा सा बन रहा है कम से कम पच्चीस तीस फिट हाइट का बन रहा है।

छत्तीसगढ़ का है और यह अस्पताल है यहाँ न बच्चे लोगो का डिलीवरी किया जाता है।